मुझे एक लॉक भी दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक कलर का है।

यहां पर मुझे एक पेर भी दिख रहा है जिसका पूरा का पूरा पत्ता गिर गया है।

यहां पर मुझे बहुत सारा बैनर्स भी दिखाई दे रहा है जहां बहुत कुछ लिखा गया है जैसे कि करियर पावर वी टू वैल्यू एंड वैरायटी एस_एस_सी ।

यहां पर बहुत सारे खिड़की भी है जो शीशा और लकड़ी से बना हुआ है।

यहां में रेड कलर का प्लास्टिक दिख रहा है जिसका ऊपर बहोत सारा मछली है।